मुझे सामने की तरफ बॉक्स के म्म स्टोर वगेरा नजर आ रहा है काफी सारी बुक्स वगेरा नजर आ रही है सामने की तरफ मुझे एक बुक्स की लाइन लगी हुई नजर आ रही है डेक्स नजर आ रहा है डेक्स के ऊपर भी बुक्स नजर आ रही आ रहा है।

सामने एक अंकल नजर आ रहे है एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है एक लड़का फोन पे बात करता नजर आ रहा है उसके हात में फोन है उसकी एक उंगली में चाबी है।

सामने की तरफ एक घर नजर आ रहा है घर के ऊपर की तरफ मुझे कुछ बोर्ड वगेरा नजर आ रहे है अंदर एक किराने की दूकान नजर आ रही है सामने की तरफ मुझे दो एक अक्टीवा नजर आ रही है।